यहां पर एक आदमी है जिसके हाथ में एक बैग है।

यहां पे एक कार खड़ी है जो नीले रंग की है।

आसपास गमले रखे हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं।

पास में एक घर बना है जीसके आस पास बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।